यहां एक जैक जॉन्स है जोकि काफी ही सुंदर है और लाइटिंग भी सुंदर है यहां पर बॉयस के लिए कपड़ा है।

यहां एक जंगल है जो की काफी सुंदर है यहां पे एक टाइगर सो रहा हैं और हरी भरी पेड़ पौधे भी लगी हुई है।